एक रिसेप्शन टेबल दिख रही है और कुछ ड्राई क्लीनर्स दिख रहे--

एक जिम दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारी फिटनेस की मशीने लगी हुई है।

और ऊपर वाटर वेल का एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

रेती पर बैठे हुए कुछ मज़दूर भी दिख रहे हैं।

मुझे इस चित्र में एक होम गार्डन दिखाई दे रहा है।

और कुछ स्टूडेंट्स जमीन पर भी बैठे हुए हैं।

हरे कलर का है इस स्कूल के बाहर एक बस भी खड़ी है।

पेंट किया हुआ है जिसके दरवाजे--

मुझे इस चित्र में कार स्केटिंग का सेट अप नजर आ रहा है।

मालाएं भी लगी हुई हैं दोनों ट्रैक्टर लाल कलर के हैं।